यहाँ पर आप लोग देख सकते है सामने की तरफ ये एक मेन रोड बना हुआ है इसके यहाँ पर हमें काफी सारे लोग जाते आते दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर आप लोग देख सकते है ये एक होटल के रूम में सामने की तरफ काफ़ी सुंदर वुडन की अलमीरा बनी हुई है।

यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एक बोहोत बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है जो कि चिकन की फैक्ट्री है। यहां पर काफी सारी जाली वाली ट्रैक में लाइन से बहोत सारी मुर्गियों को रखा हुआ है।

यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह एक सामने की ओर बैंक बनी हुई है जिसके ऊपर काफी बड़ा इसका बोर्ड भी लगा हुआ है इसका बोर्ड वाइट ब्लू और ग्रीन कलर का है इसमें स्टेट बैंक ए.टी.एम. लिखा हुआ है।

जोकि एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसके बाहर हमें एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा --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

जिसके नीचे की तरफ एक ब्लैक कलर की कार भी खड़ी हुई है और ये बिल्डिंग की पार्किंग में ब्लू कलर की काफी सारे पिलर्स भी लगे हुए हैं सामने की तरफ दो बेंचेस भी डली हुई हैं कुछ लोगो के बैठने के लिए।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

और यहाँ पर काफी सारी बड़ी-बड़ी बेन्चेस और स्टूल भी लगी हुईं हैं। यहाँ इसकी वाल ग्रीन कलर की है। इसके यहाँ पर सामने की तरफ एक ऐ.सी. भी लगी हुई --